यहाँ पे दूर दूर तक केवल हरी हरी घासे दिखाई दे रही है नीचे एक पानी बहता हुआ दिखाई दे रहा है ऊपर नीला आकाश साफ़ देखा जा सकता है।

एक व्यक्ति है जो अंदर की तरफ आ रहा है ऊपर कुछ पंखे लगे हुए है और यहाँ पे लाइटें -वाइटे सब जल रही हैं।

यहाँ के दिवारों का कलर सफ़ेद है जिसमें कुछ पेंटिंग जैसे बनी हुई है सामने कुछ चेयर्स रखे हुई है और कुछ टेबल भी है ये शायद बेठने के लिए रेस्टोरेंट है।

नीचे कुछ समान बिखरे पड़े है भूमि कच्ची है और सामने कुछ चेस जैसा कुछ बना हुआ है।

कुछ चेयर लगी हुई है अन्दर बहुत से रंग बिरंगे कपड़े रखे हुए है सामने में के कुछ डिब्बे में कुछ कपड़े रखे हुए है यहाँ डिब्बा पीला ब्लैक येलो वाइट कलर के हैं ।

सामने ही एक रास्ता दिखाई दे रहा है और बगल मे ही कुछ हरी हरी पेड़े लगी हुई है ऊपर नीला आकाश है।